और यहां पर एक पीछे में व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए हैं।

यह एक घर का बाहर घर का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारे लोहे के मदद से गेट बनाए गए हैं।

और यहां पे बहुत सारे नीचे में पेपर वगैरा गिरे हुए है।

देखिए कई प्रकार के अलग-अलग कपड़े पहने हुए हैं जैसे यहां पे एक व्यक्ति का शर्ट का कलर पर्पल है और जींस का कलर व्हाइट --

और अंदर में बहुत सारे स्कूटी वगैरा दिखाई दे रहा है जो कि ब्लू ग्रीन कलर का है।